रेड कलर का शर्ट पेहना हुआ है ब्लू कलर का पैंठ पेहना हुआ है टोपी लगाया हुआ है रेड कलर का--

छोटे -छोटे खम्भे लगे हुए है जिसमें झंडे लगे हुए है वाइट कलर के ग्रे कलर के ऑरेंज कलर के ब्लू कलर के पिच कलर के--

एक अ पिकअप दिख रही है वाइट कलर की चक्के दिख रही है और ब्रिज दिख रही है खंम्बे दिख रहे है उसमे--

यहाँ पे अलमारी रखी हुई है ग्रे कलर की जिसमें बहोत सारे कफ़ रखी हुई है ग्रे कलर की है वाइट कलर की है ऑरेंज कलर की है और येलो कलर का हैं ।

ऊपर बोर्ड टंगा हुआ जिसपे लिखा है यादव जनरल स्टोर --

बड़े बड़े पेड़ पौधे दिख रहै है और सूरज दिख रहा है उगता हुआ।